और कुछ लोग खरीदारी के लिए दुकान के बाहर भी खड़े हुए हैं।

यह बहुत ही सुंदर दुकान है जिसमें आप देख सकते हैं रंगीन लाइट ।

ये एक छोटी सी दुकान है चाय की जिसमें आप देख सकते हैं पन्नी में बिस्किट वगैरा रखे हुए हैं।

और कुछ भगवान भी बैठे हुए और आप देख सकते हैं ऊपर एक तस्वीर भी लगी हुई है।